और अंदर यहाँ पर एक कबोर्ड बने हुए है और उसके ऊपर यहाँ पर सब्जियां रखे हुए फ़ूड रखे हुए दिखाई दे रहे है ऊपर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे हमको एक कार्ड लगा हुआ दिखाई दे रही है वाइट कलर की एक व्यक्ति ने उसका गेट खोल रखी है और उसको उघार है।

यहाँ पर हमे एक तालाब दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही रही है कपडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने बड़ा सा कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है निचे हरी - हरी घास दिखाई दे रही है बेंच लगी हुई दिखाई दे रही है आर्टिकल चेयर --

ऊपर शिखर बनी हुई दिखाई दे रहे है और निचे यहाँ कार भी हमें दिखाई दे रही है पेड़ हमे दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान हमे दिखाई दे रहा है।